आप देख सकते हैं जैसा कि यहां पर --

और यहां पर बहोत सारे पेड़ हैं।

तो जैसा कि आप देख--

सकते है यहां पर।

तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर--

तो जैसा कि आप देख--

बहुत सारे पेड़ रखे गए हैं यहां पर।